जिसमें एक आदमी और एक औरत दिखाई दे रहे हैं।

आस पास बहुत ही हरे भरे पेड़--

इस फोटो में हरे भरे पेड़ और घास दिख रही है।

हॉस्टल या पी_जी दिखाई--

गेट बंद है और बाहर एक पेड़ भी नजर--

ये व्हाइट कलर का कार दिख रहा है।

इस आदमी ने ब्लैक कलर का चड्ढा और शर्ट पहना हुआ--

और चारों तरफ से लोहे का बना हुआ किनारा बनाया गया है।

जिसमे रंग बिरंगे लाइट लगे हुए हैं।

आस पास हरे भरे पेड़ भी है।

यहां पे एक बिल्डिंग बना हुआ है।

जहां पे ऊपर एक पेड़ है और बाइक भी रखा हुआ है।

पानी बह रहा है और कुछ पेड़ पौधे भी हैं।